ये पतंजलि टेस्टी नमकीन ढाबा है जो की एक स्कूल के बच्चो ने यह अरेंज किया है औ जो कि मेडम मैमू को चखाने के हेतु किया हैं ये --

इस फोटो में बहुत सारे आदमी खड़े हैं जो की ओ एक खंबा भी है इस फोटो में भीड़ हो रही है कुछ जुलूस निकल रहा है। यह मेले का फोट है।

ये ग गेहूं निकल रहा है। ये खेत का फोटो है। यहाँं पे एक टैक्टर खड़ा हुआ है और ट्रैक्टर के पास आदमी खड़ा है।